यहाँ पे सामने काफी सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जो सारी की सारी एक जैसी है बहोत बड़ी-बड़ी जमीनें काफी सारी--

यहाँ पे सामने एक मकान जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर शुभम शौचालय लिखा हुआ है इसमें अगर --

नीचे कोर्स लगा हुआ है गेटों में ऊपर भी कोर्स लगा हुआ है बाहर सड़क दिखाई दे रही है बाहर सड़क पर भी--

यहाँ पे सामने काफी सारी चेयर डली हुई है और रेलिंग लगी हुई है स्टील वाली ऊपर कुछ पंख लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है।

नीचे कुछ चूड़ियां दिखाई दे रही है जिसमें कुछ पैनल लगे हुए हैं और पीछे बसों की तरह --

नीचे चूल्है बने हुए है होल की तरह दिखाई दे रहा है ऊपर बादल दिख रहा हैं।

यहाँ पर बल की तरह कुछ दिखाई दे रहा है इसके नीचे कालीन बिछी हुई है और सामने कुर्सियां रखी हुई है बीच में टेबल रखी हुई है।

यहाँ पे सामने एक मेन गेट बना हुआ है इसके बाजू में दो चूरिए बने हुए है जिनके ऊपर गोल- गोल लाइट लगी हुई हैं।